ठीक है और पेड़ पौधे तो हैं ही यहां पर।

इस फोटो में दिन समय दिखाई दे रहा हैं यहां पर--

पोस्टर लगे हुए है दीवार पे।